ऊपर मे टीवी का एंटीना भी लगा हुआ है और एक मनुष्य भी दिख रहा है।

बाहर में दो रिक्शा रखे हुए हैं।

दुकान के अंदर ढेर सारे सामान दिख रहे हैं।

दूर में एक टावर भी दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर में पीला रंग का फूल का ब बगीचा दिख रहा है।

जिसमें आय लव नाहरलगुन लिखा हुआ है। रेलिंग भी लगाया हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में एक दिल्ली बाजार दिख रहा है।

जिसमें ढ़ेर सारे माले टगें और रखे हुए हैं।

और हल्का का हरा रंग का दीवार भी--

पेड़ में जिसको अच्छे से सजाया गया है और बहोत सारे टेंट भी दिखाई दे रहा--

मुझे इस तस्वीर में बड़े बड़े पेड़ पौधे दिख रहा है।

स्प्रे डब्बा और ये सब रखे हुए हैं।

बिस्तर भी लगे हुए हैं बूटी भी रखा हुआ है।

पर नीचे में बेंच भी रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब भी --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

मुझे इस तस्वीर में एक शीशे से बने हुए घर दिख रहा है।

हरा और सफेद रंग का दीवार भी है भी है।

मुझे इस तस्वीर में बहोत सारे औरतें दिख रहा है।

टेबल के ऊपर में दो कटोरी एक मग कार्टून रजिस्टर और क्रीम रखा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में बम्बू और टीना से बना कमरा दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक रेस्टोरेंट दिख रहा है जिसमें ढेर सारे चेयर और टेबल रखे हुए हैं।

ऊपर में बहुत सारा कपड़ा और एक बैग रखा हुआ है।

और आसमान में बादल भी है पेड़ भी देख रहा है और एक मनुष्य भी--

और छोटा सा बिस्तर भी रखा हुआ है जिसमें सफेद रंग का कपड़ा बिछाया हुआ है और उसके ऊपर लाल रंग का तकिया रखा हुआ है।